एक आदमी सड़क पर चल रहा है और पीछे एक बड़ा दरवाजा बना हुआ है।

जिसका रंग गोल्डन है और पीछे एक दरवाजा ह--

और उसके पास दो पहिए भी पड़े हुए है।

और एक प्लेट के अंदर एक चम्मच लगी हुई है।

कुछ खंड ठिंडा हुआ खाना रखा है और गाजर का सैलेड रखा हुआ है और डिस्पोजल है।

देखने में यह कोई बाइको का शोरूम लग रहा है जहां पर बहोत सारी बाइके खड़ी हुई है।

यह देखने में कोई कंस्ट्रक्शन साइट लग रही है।